हरे रंग की भी नजर आ रहे है वही वहाँ पर काफी लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ गमलों में पौधे नजर आ रहे हैं और वहाँ पर एक का घर दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार सफ़ेद रंग की दिख रही है विंडोज नजर आ रही है मीटर बोर्ड दिखाई दे रहा हैं।